ये एक घर है घर मेंअंदर एक लड़का खड़ा दिखाई दे रहा है जो कसरत कर रहा है |

अकेले ही वो अपने घर में के अंदर कसरत --

यहां पर सारी चीजें बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही है मुझे ।

शायद मुझे लग रहा है ये एक सोफा है देखने में काफी खूब सुंदर लग रहा है और इसके पीछे एक गेट है वो भी देखने में काफी बहुत सुंदर लग रहा है फूल रखे हैं आगे वो भी बहुत सुंदर लग रहे हैं।

इसके नीचे जो चीजें पड़ी है इसके तो नाम नहीं पता क्या है।

ये एक बारात घर है जो इतनी इतनी सारी सजावट है देखने में काफी अच्छी लग रही है शायद किसी की शादी है यहां पर।